मंदिर के गेट पर कुछ लोग खड़े हुए है मंदिर के ऊपर एक गुंबत बना हुआ है लेकिन गोल्डन कलर का है दोनों साइड व्हाइट कलर के पिलर दिखाई दे रहे है मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

बहुत खूबसूरत गेट दिखाई दे रहा है गेट के बाहर लाइट के पेड़ दिखाई दे रहे है जो काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे लाइट के खंबे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक लाइट का खंबा पड़ा हुआ है जिसमे तीन तीन व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के पीछे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बड़ासा हार्ट शैप बना हुआ है जिसको फूलों से सजा अ हुआ है और यहाँ पर ग्रीन व्हाइट और यह पिंक कलर की फूलों से इसमे सजावट की हुई है।

मैन बोर्ड के पीछे की साइड एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारे तार दिखाई दे रहे है कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है यहाँ पर एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बड़ी सी गणेश की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की है जो काफी सुंदर लग रही है।

बहुत सारी बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे नी अ अ बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक छोटी सी बच्ची जिसने व्हाइट कलर की छोटी सी ड्रेस पहन रखी है यहां पर एक ब्लॅक कलर का अपना घर दिखाई दे रहा है यहां पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं क एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

पीछे व्हाइट कलर की इमारत दिखाई दे रही है जिसके सामने एक लाइट का खंबा दिखाई दे रहा हैजो काफी सुंदर लग रहा है इमारत के ऊपर एक व्हाइट कलर का पिलर दिखाई दे रहा है।